आ- बड़े ओ- हॉल दिखाई दे रहा है इसमें फैन चलते हुए नज़र आ रहे हैं और कई सारी भीड़ दिखाई दे रही हैं।

इसमें ग्रास लगी हुई है एक सोलर पैनल दिखाई दे रहा है। आस-पास पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और टू व्हिल्लर्स दिखाई दे रही --

जिसमें ट्रांसपेरेंट इम्म डोर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और लाइटिंग भी ज्यादा हैं।